क्योंकि यहाँ पे एक कलश भी रखा हुआ है कलर देखने में बहोत ही शुंदर है।

वोती होगी तो इसके लिए रोड बनना चाहिए और अन्न की व्यवस्था करनी चा --

हमे भी पर ऐसे ही ध्यान देना चाहिए सुनना चाहिए देखना चाहिए क्योंकी इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है।

ये ऊपर फैन भी लगे हूए हैं और पोस्टर भी बहुत अच्छे-अच्छे लगे हुए हैं परन्तु ऐसा लग रहा जैसे निचे बहुत पानी भरा हुआ --

जैसा की कोई खेत में है और सूरज की रोशनी भी इस पर सीधी आ रही है पौधों के लिए पानी सूरज का प्रकाश और छाँव सभी की जरूरत होती है।

और इसकी बाहर की दीवारों पर डायग्राम भी बनाए गए है अच्छे-अच्छे।